चेयर्स भी दिख रहे हैं जो की एक अच्छी बात है और चारों साइड गार्डनिंग भी बहोत ही अच्छे से किया गया है।

और यहां पास बहुत सारे डंबल्स भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां एक गर्ल्स हॉस्टल की ब्रांडिंग हुई की गई है बगल में एक भगवान जी का फोटो भी दिखाई दे रहा है।

जो कि छोटे से सफेद कलर के हैं और उनके बगल में एक मंदिर भी दिखाई दे रहा मंदिर के--

और सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि यहां पर शो ऑन कर रहा है।

और यहां पास कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे--